दो कार खड़ी हैं और यह काफी प्यारी और अच्छी लग रही हैं।

जिसके पास में एक बड़ा सा हरा सा पेड़ है।

और आपको सामने एक ऑटो दिखाई दे रही हो --

आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों सामने एक --

मकान दिख रहा होगाजोकि दिखने में काफी पुराना और विचित्र सा है।